यहाँ पे मछली बाज़ार फोटो है यहाँ पे बहुत सारी मछली रखी हुई हैं नीली कलर की पॉलिथीन पे छोटी बड़ी उससे भी बड़ी--